में एक मकान जैसा दिखाई दे रहा है मकान का अभी छत ढल रहा है छत पर काफी सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा हैं एक अंकल --

नीचे की तरफ खाली मैदान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट पीछे शेर जैसा बना हुआ है।

मिरर में से फोटो क्लिक कर रहा है सामने की तरफ दो मिरर दिखाई दे रहे हैं।

और एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है एक दीवार काँच की बनी हुई है।

उस तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे की तरफ आसमान भी दिखाई दे रहा है साइड में --

जो कि काफी रंग-बिरंगे है पीछे एक दीवार अअ --

उसमे एक दोकान जैसी दिखाई दे रही है दोकान के --

हिंदी व अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है और भी कुछ पोस्टर्स लगे है ।